यह चित्र में बगल में अगल में रंगीन दीवाले है।

अगल बगल में चारों तरफ तेल के डब्बे रखे हुए हैं।

सामने मे एक बच्ची भी पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है।

नहीं नहीं एक डेस्क है जिसके अंदर बहुत सामान रखा हुआ है।

जमीन में बहुत सारे हरे मैट लगे हुए है।

यहां पर लिखा हुआ है जे_एस_सी_ए नॉर्थ गेट ।

सामने में एक उ लाइट लगा हुआ है।

पीछे में व्हाइट कलर का डेस्क रखा हुआ है।

पीछे में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है।

यहां पर दीवार में बहुत सारी खिड़कियां है और दरवाजे भी है ।

यह व्यक्ति एक काले कलर का चश्मा पहना हुआ है।

बगल में ब्राउन कलर का दरवाजा लगा हुआ है।

रोड का चित्र है जहां पर बहोत सारे टुकटुक लगी हुई है।

बहोत ही बड़े रूम का चित्र है जहां पर बहोत सारे कुर्सियां और डेस्क रखी हुई है।

यह एक बहोत ही बड़े रूम का चित्र है जहां पर बहोत सारे औरतें और मर्द है।

बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह चित्र एक चर्च का है जहां पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है।

यह एक जीम का चित्र है।

दो व्यक्ति है एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

यहां पर तीन चम्मच रखी हुई है और एक व्हाइट कलर का प्लेट रखा हुआ है।

ऊपर में बहोत सारे दरवाजे और खिड़कियां बनी हुई है।

एक बच्चा पगड़ी पहना हुआ है।

बहुत सारे बाइक स्कूटी आ रही है और बहुत सारे बस भी रखे हुए हैं।

जमीन में वाइट कलर का चॉक लगाया गया है।